सामने की तस्वीर में एक नदी दिखाई दे रही है नदी के एक किनारे में बोहोत सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं ।

दो बड़े-बड़े गेट दिखाई दे रहै है लैंप भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में बसंत मेडिकल स्टोर लिखा हुआ है।

शेल्टर लगी दिखाई दे रही है दरवाजा दिख रहा हैं।

सामने की तस्वीर में बैंड दिखाई दे रहा है शॉप दिखाई दे रही है कुछ--

तस्वीर में एक रोड़ दिखाई दे रही है रोड़ से लगा हुआ लाल रंग का एक बोर्ड दिखाई दे रहा--

बॉउंड्री दिखाई दे रही हैं ।